देश-विदेश से आते हैं घूमने को --

आप को डिशेस मिल सकते हैं जैसे चावल रोटी मुर्गा मीट मछली इत्यादि अंडा कढ़ी। जो आप चाहें यहाँ आपको मिल सकती हैं सारी सविधाएं।

यहाँ के अगल-बगल के नजारे भी बहुत ही अच्छे है और ये पेट्रोल पम्प जो है वो हमारे --